प पीछे के साइड कुछ पेड़ भी नजर आ रहे --

और यहां पे ब्राउन कलर का कारपेट भी नजर आ रहा है।

यह इमेज हमे एक क्लिनिक की नजर आ रही है।

यहाँ पे वी टू भी लिखा हुआ हैं।

यहाँ पे कुछ टू व्हीलर गाड़ी खड़ी नजर आ रही है।

जहाँ पे हरियाली नज़र आ रही हैं।

रास्ते पे एक हमें बाइक खड़ी नज़र आ रही है ।

खेत में पानी का फुव्वारा चल रहा हैं।

यहाँ पे एक औरत के हाथ में झाड़ू भी है।

यहाँ पे एल.इ.डी. ही ऊपर सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ है ।

यहाँ पे एक टेबल है और बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं ।

यहाँ पे सफेद और लाल कलर की छतरी भी नजर आ रही है।

काली कलर की लाल कलर की यहां पे कुछ लोग खड़े भी हैं।

यहाँ पे लाल पीले हरे कलर के --

और ईमारत पे हमे कांच भी नज़र आ रहा हैं।

पीछे के साइड कुछ घर भी है।

यह इमेज एक इमारत की है जो दो मंजिला है।